एक सामने मे एक घर दिख रहा है जिस पे वुडेन वर्क हुआ है और ग्लास डोर लगा हुआ है।

इस रास्ते पर कुछ पानी गिरा हुआ भी दिख रहा है।

एक मजदूर नीचे सीढ़ी से ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा उसने लाल कलर की टी शर्ट पहन रखी है मजदूरों के पास तसले फावड़े जैसी चीजें है।

राइट साइड में पीले कलर के बहोत सारे बिल्डिंग्स घर ऐसे दिख रहे हैं ऊपर में काले बादल छाए हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक ओपन फील्ड दिख रहा है और लेफ्ट साइड में एक घर और राइट साइड में भी एक घर दिख रहा है उनकी छते टिने की है।

पीछे में शीशा और बहुत सारे चीजें दिख रही हैं राइट साइड में एक गीजर भी दिख रहा है।

नीचे एक इलेक्ट्रिक का डब्बा भी रखा हुआ है जो चैन से बंधा है और लॉक लगा है।

प्रतिमा के पीछे काली जगह से कुछ लिखा हुआ भी है।

इस फोटो में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाई दे रहा है।

पीछे में ऑरेंज वाइट और ग्रीन कलर के बलूंस लगे हैं एक छोटा बच्चा कुछ परफॉर्म कर रहा है।

पीछे में कुछ पहाड़ वगैरह भी दिख रहे हैं और बीच बीच में खेती के लिए ऐसे स्ट्रक्चर बना के उसमें पानी भी भरा हुआदिख रहा है।

इस फोटो मे एक विद्यालय दिखाई दे रहा है जोकि येलो कलर का है उस पर रेड कलर की बॉर्डरिंग हुई है।

ऊपर में मंगल पांडे झांसी की रानी महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस की फोटो है।

बहुत सारी लाइटें जल रही हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए भी दिख रहे हैं।

ये फोटो में वाटर पार्क का व्यू दिखाया गया है।

बगल में कुछ ट्यूबेल जैसा स्ट्रक्चर भी दिख रहा एक पाइप दिख रही है।